यहाँ पर कोई गार्डन सा लग रहा है जो की यहाँ पर बहुत सारी नीली-पीली रेड कलर में लाइटे भी जल रही है यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है की जो भी कलर दिख रहा है बादल भी--

यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है कुछ लेडीज़ भी बैठी हुई है ये यहाँ पर--